सामने एक दुकान दिखाई दे रही है इसके ऊपर अमृत सरयान दी दुकान लिखा हुआ है और सामने--

जिसने गले में हेडफोन डाले हुएं हैं।

सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसके ऊपर वेलेंटाइन आइसक्रीम लिखा हुआ दिख रहा है।

टैरिस का गेट फूलों के साथ--

लगे हुए हैं और साइड पर रेड कलर के--